देखीये ले तो बोलेगा ले हरे-हर बत्ती जल रात होगले ।

वाह बड़ी किनारे में जाके बैठल है एजा सतपूरा --